ये देखिये बहोत ही सुन्दर-सुन्दर हमारे पास यहाँ छोटे-छोटे छोटे-छोटे केक रखे हैं। सब इन्हे कप केक बोलते है। रेड कलर की ट्रे में। यहाँ पर हमे देखे चॉकलेट और येलो कलर के केक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

ये देखिये यहाँ पर हमे क हम्म कार्यालय टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे बहुत सारी बसे दिखाई दो ठो बसे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमे --